जो के बालों के उपयोग के लिए हो सकती है साथ ही में ये एक सोफ़ा भी रखा हुआ है।

सूरज चमक रहा है और चमकों में एक रेलवे लाइन की ब्रिज भी दिखाई पड़ रही है।

यहा पे दो लोग एक नाव मे सवार दिख रहे है। पहला जो नाव चला रहा है और दूसरा उसके हाथों पर हाथ रख के सहारा बनाऐ हुए है।

यहाँ पे एक चबूतरा दिखाई दे रहा है ठीक उसके ऊपर तीन पीढ़ियां है।